जैसे की आप देख सकते हैं ये एक बोहोत प्राचीन और पुराना मंदिर है।

जैसे की आप देख सकते हैं इस तस्वीर में बाल मेला लगा हुआ है जहां पे बच्चे दुकाने लगाए हुए है।

अ-अ मंचूरियन है दो चम्मच रखी हुई दो ग्लास रखी हुई हैं एक माउंटेन डीव का कोल्ड-ड्रिंक रखा हुआ और भी बोहत सामान है।

उन्होंने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है नीचे ब्लू कलर का जींस पहनी हुई है और वाइट कलर की शूज है।

सफेद रंग के काले रंग के आप देख सकते हैं कि यहां पे झींगे भी रखे हैं।

जैसे की आप देख सकते हैं यह एक तस्वीर है जिसमे लोग पढ़ा रहे हैं एक आदमी पढ़ा रहा है।

आप देख सकते हैं दो टावल्स पे रखे हुए है।

जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे बच्चें आए हैं खेलने कूदने के लिए।

आप देख सकते है इस तस्वीर में की रोड है जो लोग आते-जाते रह रहे हैं यहाँ पे कार है यहाँ पे |

जैसे की आप देख सकते है इस तस्वीर में ये एक अस्पताल है जिसका नाम अस्पताल गोपाल गंज का है जहाँ पे बहुत सारे लोग है।

वो भी ब्रिज के ऊपर खड़े हुए नीचे नदी है आप देख सकते हैं उन्होंने --

यहाँ पर कटोरा भी है जिसमें सब्जियाँ रखी होती है ।

जैसे कि आप देख सकते है इस तस्वीर में की एक गार्डन है।

बहोत सारी गाड़ियां हैं और भी बहोत सारी चीजे हैं।

देख सकते हैं इस तस्वीर में की एक कोई गार्डन है जिसमें --